और यहाँ पर काफी हरियाली है सामने एक डस्टबिन भी है।

व्हाइट कलर के टाइल्स लगाए गई है और कुछ ब्राउन कलर की भी लगाई गई है बीच-बीच में।

सीलिंग पर बहुत सारे फैन टंगाए है और बल्ब लगाया गया है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम है इस डैम की चार गेट खोले गए हैं इस --

यहाँ पर एक सड़क है ये सड़क कच्चा है और राइट साइड पर इस सड़क के --

परफॉर्म कर रहे है और एक लड़का वाइट कलर की ड्रेस में एक झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक छोटा-सा स्कूल है इस छोटे से स्कूल पर बहुत सारे लोग --

इस पेड़ के कारन नीचे बहुत ही अच्छी छाया आ रही है।

शटर के नीचे ही शीशे का दरवाजा बनाया गया है इस ऑटो सर्विस का --

साइड पर बहोत सारी चीजे रखी हुई गयी है ये पेट शॉप है।

सामने कुछ कवर्ड रखा हुआ है कवर्ड खाली है।

लेफ्ट साइड पर भी गाड़ी --

रूम बन गया इस रूम पर बहुत ही बढ़िया तरीके से झूमर टँगाई गई है।

टेबल सजाई गई है इधर राइट साइड पर एक काउंटर है।